यहाँ एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे बहोत सारे आ बहोत सारे पहाड़ पीछे की तरफ बने हुए हैं और यहाँ पे नदी तालाब --

यहाँ पे एक मंदिर का अ-अ दरवाजा बाहर की तरफ दिख रहा है मंदिर में तीन उप्पर गुम्बद --

तीर्थ यात्रा पे बहोत सारे लाइट दिख रही हैं और बहोत सारे झेंडे भी दिख रहे हैं।

के तरह टहलने आये हुए हैं एक सामने से दो व्यक्ति दिख रहे हैं जो अपने पेट पर बैग टांगे हुए थे।

यह एक प्रदर्शनी जैसा स्थल दिख रहा है जो महाराष्ट्र वादी पर-पर्यटन राजधानी औरंगाबाद मध्य अप-आपले सहर्ष स्वागत --

चैनल सा लगा हुआ है और ऊपर की तरफ ग्रिल भी लगी हुई है ग्रिल में जालियां लगी हुई हैं हॉउस मार्केट दिख रहा है।

कुछ पर्दे लगे हुए है वो नीले कलर के हैं और उपर की तरफ जो है फूलों से सजाई की गए है कुछ झालरी भी सामने से लटकी --

यह एक रोड साइड में बना हुआ ढाबा जैसा दिख रहा है जहाँ पे अ कुछ व्यक्ति आते खाना खाते हुवे दिख रहे है और म-म दुकान का मालिक --

जो है खाना बनाते हुए दिख रहा है दुकान का मालिक भट्टी पे खाना बना रहा है और एक बड़ी सी कढ़ाई में --

सीढ़ी दिख रही है जिसपे कुछ उम् जो है उसके वर्कर्स जो है उम् मम वो निवॉन कलर के टीशर्ट पहने हुवे है कुछ वर्कर्स लगबघ --

छे से सात वर्कर्स जो है दो वर्कर्स उपर की तरफ है तथा दो वर्कर्स निचे की तरफ है जो दूसरों को उपर जाने की इनकी हेल्प कर रहें हैं।

यह एक शॉपिंग स्टोर दिख रहा है जिसपें बाल दाढ़ी स्पा एंड सेलून लिखा हुआ है और अंदर के तरफ --

यह एक बहौत बड़ा सा विला दिख रहा है जिसमे नारायण एन मार्केट लिखा हुआ है वीले में बहौत सारे --

यह एक शॉपिंग मॉल जैसा दिख रहा है जिसमे विभिन्न प्रकार के आ-विभिन्न प्रकार के ब्रांड है लगभग एक ब्रांड पे --

ती ए कुछ कतार में खड़ो हुए है और बहोत सारी भीड़ है जिसमे चारो तरफ घर ही घर बने हुए है घरों को घर जो है प्राचीन जो है पेड़ों से --

यां पेड़ भी बोहोत बड़े-बड़े हैं जो यहं उगे हुवे हैं तथा घरों के साइड में पिलर्स भी हैं जिस पे लाइटें भी लगी हुईं --.

जो है र-अ एक झोला पकड़े हुवे है तथा मुँह में मास्क भी लगा है एक व्यक्ति जो की ब्लैक कलर की शर्ट पेहने हुए है एक जो की फूलों की --

यहाँ पे ई-रिक्शे खड़े हुए है और साइड में एक व्यक्ति जो की ट्राली बैग लेके खड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति जो की वेट कर रहा है रिक्शे का सामने पे र-र रिक्शे पे।